छत का सेंट्रिंग हो रहा है। उसपे छड़ बंधा रहा है। चार पैक में डिजाइन का छत बंधा रहा है। उसमें कुछ एक आदमी जैके जाकेट पहने हुए है।

पीछे पूरा दोनों साइड से इसमें सड़क एक सड़क है सड़क के दोनों साइड ऊपर वेपर लाइट लगा बस खड़ी है पीछे बहुत बड़ा मकान दिख रहा है।

एक बहुत बड़ा पेड़ बहुत सारा जंगल बड़ा पेड़ बड़ा-बड़ा पेड़ दिख रहा हैं पोल पे एक किसी का प्रचार किया बोर्ड ल --

इसमें पोखर में सीढ़ी बना हुआ है पीछे बिजली का पॉल देख रहा है तार दिख रहा है पीछे दो पेड़ दिख रहा है बड़ा सा उसके बगल में और पीछे बहुत सारा पहाड़ टाइप का और पीछे पेड़ --

चाय के बगल में एक बगीचा है जिसमें बहुत सारे छोटा-छोटा घास है पीछे बड़ा सा बहुत बड़ा-बड़ा उम्म पेड़ दिख रहा है।

ब्लू कलर का चदर उसके शरीर पे है।

अंदर कुछ लोग दिख रहें हैं शीशा लगा हुआ है।

इसमें बड़ा-बड़ा अशोक का पेड़ लगा हुआ है नारियल का पेड़ लगा हुआ है।